यहां पर कुछ लेबर्स दिख रहे है।

और यहां पर हमें ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

यहां डी_जे श्याम बाबा का डी_जे है।